इसमे जिम की बड़ी बड़ी मशीने रखी हुई हैं इनकी उपर का भाग लाल दिखाई दे रहा है काले कलर की जिम की मशीने रखी हुई है एक नीले रंग की दिवाल पर लगी हुई।

बहुत ही सूंदर डेकोरेट नजारा सामने आ रहा है बड़ी बिल्डिंग बनी हुए है दो मंजिल बनी हुए है इसका उपरी भाग लाल लाल दिखाए दे रहा हैऔर इस नीचे के भा--

इस साइड के गेट भी काले कलर के हैं दो पल्ले लगे हुए एक छोटा गेट लगा हुआ इस साइड भी दो पल्ले वाले गेट लगे इस साड भी एक छोटा गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा बहुत ही प्यारे --

इसके बीच मे ये पट्टी लगी हुई है उपर जाने के लिए और अगल बगल रेलिंग लगी है कुछ विंडो दिखाई दे रही है उपर का छत पीला और लाल रंग--

पिंक कलर की है एक टंकी सफेद कलर की उसके बाजू में बहुत बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं इसके बाजू में एक सिटी दिखाई दे रही है सिटी मे बहुत पेड पौधे दिखाई दे रहे है बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

और इसमें बहुत सारे आदमी अगल-बगल बैठे हैं बहुत सुंदर लग रहा है खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग अगल-बगल से--

और सामने खुला आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग सफ़ेद है और नीला दिखाई दे रहा है।

ये बिल्डिंग दिखाई दे रही दो मंजिल बिल्डिंग है। यह तीनों तरफा से बनी हुई दिखाई दे रही है सभी तो खुल्ला खाई दे रहा है लगता है रात का नजारा है लाइट जलती दिखाई दे रही है अलग बगल पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

सारे नजारा देखने को लगता है यहा हरी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है नीले रंग की पट्टी पुती सफ़ेद बिल्डिंग है पीछे एक डबल मंजिल पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिजली के खंबे दिखाई दे रहे है।

लाल कलर के ट्रक खड़े हुए दिखाई दे रहे है कुछ मिक्सर मशीन दिखाई दे रही है इसमे हरे भरे पौधे भी दिखाई दे रहे है और इसमे एक जाली लगाई हुई दिखाई दे रही है। ता--

इस साइड बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसे रोड की साइड में किआरे किनारे बनी हुई है जो हरे रंग हरे पौधे लगे हुए दिखाई दे रोड बना हुआ दिखाई दे काले रंग का है।

यह तीन डेकोरेटका नजारा है। यह इसका नीचे फर्श काला है। इस फर्श पर टेबल रखी हुई उसपर फूल रंगबीरंगे रखे हुए है। पूरे बाजुमे बोर्ड लगा हुआ उसके उपर फूल लगे हुए है लाल गुलाबी।

हल्कासा मकान बना पिंक कलर का उसमे नीले दरवाजा है एक खंबा लगाई दे रहा है एक चुंदी लगाई हुई दिखी माइक लगे दिखाई दे रहे है।

नीली बिल्डिंग बनी दिखाई दे रही है जो कांच की है। दो तीन मंजिल दिखाई दे रही है उपर आसमान खुला दिखाई दे रहा है गमले रखे हुए दिखाई दे--